इस इमेज में हमें एक नदी दिखाई दे रही है नदी में हमें एक नीले रंग की बोट नजर आ रही है बोट पर कुछ लोग भी नजर आ रहा है।

इस इमेज मे हमें एक डेअरी पार्लर दिखाई दे रहा है पार्लर के सामने हमें कुछ आदमी और औरत भी दिखाई दे रहे है।

सामने हमें ट्यूबलाइट लगी हुयी दिखाई दे रही है और हमें पोस्टर लगे हुए भी दिखाई दे रहे है जो हमें लाल पीले और सफेद रंग के भी दिख रहे है।

इस इमेज में हमें एक सलून दिखाई दे रहा है सलून में सफ़ेद रंग की दिखाई दे रही है और हमें सामने कांच लगे हुये दिखाई दे रहा है।

ग्राउंड के पास में हमें एक बाउंड्री दिख रही है और किनारे पर हमें पेड़ लगे हुए दिखरहे है सामने हमें एक कार भी दिखाई दे रही है और आसमान देख रहा।

इस तस्वीर में हमें एक बाजार दिखाई दे रहा है बाजार में हमें कुछ लोग दिख रहे हैं सामने हमें हरी पट्टी पर मछली पड़ी हुई दिख रही है।

इस इमेज मे हमे दुकान दिखाई दे रही है दुकान की दीवार हमे गुलाबी रंग की दिख रही है और दुकान के बाहर मे गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है गाड़ी हमे नीले काले रंग की दिखाई दे रही है।

पिऊल दिखाई दे रहा है और बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो सफेद रंग कि दिखाई दे राही है।

इस इमेज में हमें एक मेला दिखाई दे रहा है झूला भी दिखाई दे रहा है सामने हमें लाल नीले रंगके गुब्बारे दिखाई दे रहे है।

सामने में बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग हमें सफेद रंग की दिखाई दे रही है और एक छोटी सी झोपड़ी दिख रही है उसके ऊपर हमें झंडा लगा हुअ दिख रहा है जो की लाल--

इमेज मे हमे एक रोड दिखाई दे रहा है रोड पर हमे एक हरे और पीले रंग का ऑटो दिखाई दे रहा है ऑटो के बगल मे हमे तीन लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में हमे एक अ घर दिखाई दे रहा है घर हमे ब्राउन का दिखाई दे रहा है घर में हमे एक खिड़की भी दिख रही है।

नीचे हमें कुछ लड़कियां बैठी हुई दिख रही लड़कियों के सामने हमें गुलाबी रंग की सीट रखी हुई दिख रही है और एक मैंम दिखाई दे रही जिन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए--